यह तस्वीर रोड के किनारे की है जहां--

जिसका नाम उमंग पैलेस है।

यह एक ऑफिस की तस्वीर है जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रोड़ की तस्वीर है इसमें सूरज ढल रहा है।

ये तस्वीर किसी ऑफिस की है।

और अभी फ्रंट पे एक स्विच बोर्ड है।

ये इमेज किसी रेस्टोरेंट की है।

यहां पे नांव दिखाई दे रही है।

और संगीतकार वाद्य यंत्र का प्रयोग करके --

और रोड पे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कॉलेज की है कॉलेज की बिल्डिंग लाल रंग की है।

यह तस्वीर एक पारक की है।

तथा आसपास घास लगी है।

जिसमें अ एक बोर्ड पे डाकघर लिखा हुआ है तथा।

तथा दूसरे बोर्ड पर विनोद कुमार एंड कंपनी लिखा है।

यह एक दुकान है इसके बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी है।

तथा आसपास कुर्सियां और मेज़ रखी हुई है रेस्टोरेंट ।

और एक पारक भी है जहां पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।